यहाँ से लोगों का आना-जाना होता है इस गेट के बाहर एक मोर जैसे सफ़ेद मोर को सजाया गया है।

यह एक मॉल जैसा नजर आ रहा है यहाँ पर तो ऑटोमेटिक सीढ़ियाँ बनी हुई है और यहाँ एक --

इस मैदान के चारों और लाइटिंग लगी हुई है और इस मैदान में सभी प्रकार के स्पोर्ट गेमस करवाए जाते हैं।